और दीवार का रंग सफेद है। दीवार पे फर्नीचर लगा हुआ है जिसका रंग भूरा है।

स्कूल के आगे की तरफ ग्राउंड पड़ा है जिसपे छोटे छोटे घास जमी है।

स्कूल के सामने की तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और स्कूल के ऊपर एक लाइट लगी है।

जिसने काले रंग का शर्ट पहन रखा है और पीले रंग का अँगौछा डाल रखा --

उसमें गोल्डन कलर के लट्टू लगे हैं और गुलाब के फूल लगे हैं।

हाल में दोनों तरफ मेंज और कुर्सियां पड़ी हैं कुर्सियों का रंग काला है।

एक बड़ा मकान बना है जिसके ऊपर गुम्मद के आकार का बना है जो सफेद रंग में पुता है।

दूसरी तरफ विंडोज लगी हैं जीसमें लोहे की सरिया लगी हुई हैं।

मिट्टी का काफी बड़ा गड्ढा है जाल की आगे तरफ एक आदमी खड़ा है जिसने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी--

और एक मोफलर बांध रखा है मेन रोड के तरफ से एक बड़ा ट्रक आ रहा है रोड पे गिट्टी भी पड़ी हुई है।

आगे की तरफ एक मेन दीवार है जिसमें तीन गेट बने हैं बीच में एक डिजाइन बनी हुई है।

पहाड़ के अंदर एक खंभा है जो नीले और पीले रंग का है।

यह एक गोदाम है जिसमे सूअर पाले हैं ऊपर की तरफ काले रंग की शटरिंग पड़ी है।

जो लकड़ी से बनी हुई है नदी के दोनों तरफ काफी हरा भरा जंगल है।

कपड़े की दुकान में फर्नीचर लगा है जो लकड़ी का बना हुआ है उसका रंग लाल है।

सारे रूल्स पे अलग अलग कलर की डिजाइने पत्तियों फूलों से बनी हैं।